कई लोग खड़े है ओपनिंग हुआ और अ बॉस जो है सब को कुछ बोल रहे है पता नै क्या बोल रहे है इसके बारे मैं जानकारी नयी है ।

इसके बारे मे और कुछ नहीं कह सकते काफी बहेतरीन लग रहा है देख--